सामने एक टाइल्स से बनी हुई दीवार भी नजर आ रही है स्विमिंग पूल के साइड मे एक होटल भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक होटल नजर आ रहा है जिसके सामने एक शौचालय का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है सामने बड़े बड़े बल्ब भी लटके हुए दिख रहे है।

जिनके सामने कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस चित्र मे एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक आलीशान झोपड़ी भी नजर आ रही है।

जिनमे सफ़ेद फूल खिल रहे है सामने दो बड़ी बड़ी जिराफ की मूर्तिया भी नजर आ रही है।

सामने एक मिलिट्री टैंक भी नजर आ रहा है जिसके पीछे एक बेंच दिखाई दे रही है।

बोर्ड के ऊपर दो लाइटे नजर भी आ रही है साथ मे कुछ फूलों की सजावट भी दिखाई दे रही है सामने बड़ी सी लाइट भी दिखाई दे रही है।

सामने कुछ वाहन भी खड़े हुए दिख रहे है मैदान के अंदर भी कुछ बच्चे नजर आ रहे है।

इस चित्र के अंदर एक घास का मैदान नजर आ रहा है जिसके सामने कुछ घर भी बने हुए दिख रहे है।

इस चित्र मे एक बास्केटबॉल का मैदान नजर आ रहा है जहापर कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते हुए दिख रहे है।

इस चित्र मे एक पार्किंग नजर आ रही है जहा पर एक शेड मे कुछ गाडियाँ खड़ी हुई दिख रही है पार्किंग के पीछे बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है।